जो पिक्चर है इस पिक्चर मे एक अ दुकान को दिखाया गया है आ जो एक फ्लावर शॉप है जहा पे बोहोत सारे फ्लावर रखे गए है और ये जो है फ्लावर भसक के ऊपर रखा गया है।

फ्लावर वैस के साथ अ और बहोत ही सुंदर एक कलरफुल लग रहे है एक महिला यहां पर खड़े हुए है और फ्लावर वस मे फ्लावर जो बोहोत अच्छे है लग रहे है।